के लिए हाथी की मूर्ति बनी हुई है जो कि इसपे --

ये लोग आज जा रहे हैं जैसे कि लेडीज वगैरह जेन्स वगैरह --

ये एयरपोर्ट जो है ए यहाँ पर एक छोटी बच्ची है जिसने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ है और --

आज जहां पर लड़की पार्लर --

जोकि ये ब्लू और व्हाइट कलर के हैं।

और वीवो इस तरह कि काफी कंपनियां है। जिनके मोबाइल होते है और वोडाफ़ोन और जैसे कि --

ये उसपर अं सवारियां जो होती हैं --

तो हम ले सकते है और फ्रूटी और थम्स अप --

अमम थोड़े है और जैसे की अगर हमें जरूरत होती है तो --

आ जगह है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक --

जैंसे कि काफी पुराना मंदिर होता है तो उसको जैसे --

है काफी ये चेयर वगैरह और टेबल वगैरह रखे हुए हैं जैसे की --

और सुबह भाग-दौड़ लगाए तो इस तरह से हमें जो खुली हवा लगती है। इससे --

आ किताबो की या नोटबुक्स की जरुरत हो तो हम खरीद --

और फंक्शन किये जाते हैं। इस तरफ फंक्शन करी हुए हैं और अं ये लड़कीओ ने --

अ काफी ये पोस्टर लगी हुई है जैसे कि बाल गोपाल के --

मकैनिक कार मकैनिक ऐसे इंटेलिजेंट मकैनिक होती है जो कि एक --

कार बना देती है। जिसमे कि उसके पुरजे अलग हो जाते हैं। उन्हें जोड़-जोड़ कर --

अ जैसे कि मूर्ति पर सोना इसको --

तो उसमे टिकट देना होगा और जिस तरह से एक ये ट्रेन --

है जैसे की फूलों में हर तरह का फूल आता है। चमेली का फूल आता है गुलाब का फूल आता है।